गेम के प्लेयर हैं जिन्हे अपनी अच्छे से बॉडी बना रखी है।

यह पहाड़ो का दृश्य है। यहाँ पर --

बहोत बड़े-बड़े पहाड़ के के टुकड़े नज़र आ रहे।

प्रकार की तस्वीरो से जुड़ा है। इसमें कुछ श्लोक कुछ डायलाग वगैरहलिखे हुऐ हैं। यह भी खाली है।

अलग-अलग स्थान पर जाने का र रास्ता नजर आता है।

हो चूका है। यह एक मैकेनिक है जो कि इसे अच्छे ढंग से रिपेयर कर रहा है और उस पर पोलिश करते हुऐ नज़र आ रहा है।

और के साइड में एक हैज की पट्टी है। उस हैज की पट्टी की बीच अन्दर के साइड --

बैंड बाजे के गाड़ी खड़ी हुयी है।

इस बैंड बाजे के गाड़ी में डी_जे --

काट कर पीस में रख कर उन्हें तलने की कार्य में लगे हुए हैं।

हवेली दिखाई दे रही है इस हवेली के --

एक साइड हमें उसके ऊपर पीपल उगते हुए नज़र आ रहे हैं। यह ऊपर से ली गयी फोटो है।

वर्कर काम कर रहे हैं। एक औरत आपने लिए यहाँ पर बैठी है। एक व्यक्ति --

बर्गर चाऊमीन मिलते हैं। यहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं।